उसके अंदर हमें हरे रंग का बोर्ड दिख रहा है उस हरे रंग के बोर्ड पर सेफद अक्षरो से कुछ लिखा हुआ है यहाँ कुछ स्टैंड पर बना हुआ दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर बिजली के तार जाते हुए दिख रहे है।

फिर मे हमें काले रंग का रोड दिखाई दे रहा है इस पे सफेद रंग की लाइन दिखाई दे रही है जो दोनों साइड बनी हुई है।

इस चित्र के अंदर यह एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है यह हॉस्पिटल एक हल्के सफेद रंग का दिखाई दे रहा है इसमें कुछ नीले रंग की कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं ।

सामने एक टेबल रखी जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है इसकी दिवार पे कुछ बोर्ड लगा है कुछ काले रंग का और सफ़ेद रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।